यहां पे बहोत सारी राइडें हैं जहां बच्चे आकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं बच्चों के साथ बड़े भी आके अपना मनोरंजन कर सकते हैं।

यह देखने से ही मन को शान्ति और एक प्रकार का सुकून मिल रहा--